यहां पे कुछ कपड़ा भी रंगा हुआ दिखाई दे रहा है अ बीच में हरा थोड़ा पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और बहुत सारे पेड़ पौधे से है और रोड दिखाई दे रहें--

और आसमान दिखाई दे रहा है इस साइड पेड़ दिखाए दे रहा है खिड़की दिखाई दे रहा है इस साइड भी पेड़ है खिड़की है।

बिजली के खंभा दिखाई दे रहा है। कार दिखाई दे रहा है।

और यहां पे बहुत सारे सामान सा दिखाई दे रहा है लाइट बर रहा है व्हाईट कलर से पेंट किया गया है।

और यहां पे घेरा हुआ दिखाई दे रहा है हरा कलर का पानी जैसे दिखाई दे रह है काटे काटे बहुत बड़ा फैटे का ऊपर लोहा सा लगा हुआ है।

फेन सब तो तो दिखाई दे रहा है बहोत सारे फोनस है सामान सब है।

खिड़की तर लाइट बर रहा है बीचा में एक बेग दिखाई दे रहा है।

यहां पे तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं जो मोबाइल रखे हुए है एक आदमी सेल्फी ले रहा है।

यहां पे मशीन दिखाई दे रहा है यहां पे मीटर दिखाई दे रहा है।